बीच में एक लड़का पोज देकर खड़ा है।

काउंटर है काला और पीला रंग का दिवाला है सफेद और लाल रंग का।

इस फोटो में हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारा--

और चारों तरफ अच्छा वातावरण है हरा भरा।

फोटो में बहुत सारी चूड़ियां दिख रही है यह किसी चूड़ी का दुकान लग रहा है।

इसमें कई सारे लोग आ जा रहे हैं अंदर काफी लाइट्स जले हुए हैं।

यह फोटो में किसी कार्यालय का दृश्य है।

ग्रिल स्टील के दिख रहे हैं और पहाड़ का एंट्री गेट सामने में है।

कपड़े का दुकान के पास स्टैचू लगा हुआ है कपड़ा बेच रहा है और साइड में बाल्टी रखा।

और च्यवनप्राश का डब्बा रखा हुआ है एक आदमी कुछ सामान निकाल रहा है।

यह फोटो स्टेडियम का है।

जहां दो लड़की बैठी हुई है।

सामने एक मेनू कार्ड या किताब है और पानी का बोतल है।

यह एक सफेद कलर का रूम दिख रहा है और यहां पे एक टेबल पर एक कंप्यूटर और एक टेलीफोन रखा हुआ है।

इस्कूटी बाइक खड़ा है ।

दीवाल पीले रंग का नजर आ रहा है जमीन साफ सुथरा है।

बहोत सारे लोग इकट्ठे होकर पंडित से पूजा करवा रहे हैं।